यहाँ पर भी हैं यहाँ पर बादल भी हैं।

एक बिल्डिंग है यहां पर कांच लगे है। यह कथई और क्रीम कलर के है।

यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर लोग भी हैं। यहाँ पर बादल भी हैं।

यहाँ पर बहोत सारे लोग है यहाँ पर बादल भी है यहाँ पर एक खंबा भी है।

यहाँ पर दो खंबे है। यहाँ पर एक टेंकर है यहाँ पर एक ट्रेक्टर भी है यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं। यहाँ पर ग्रीन --